और गुफा बना हुआ है इस गुफा के अंदर एक ऐसा बना हुआ है एक आदमी खड़ा है गुफा के अंदर--

यहाँ नदी है और नदी के सामने और रोड भी है।

खेत को पूरा अकादा किया गया हैं।

उम्म्म्म एक तालाब है यहाँ सब

वहाँ एक सामने एक आदमी एक--